एक पोल है पोल में से तार उधर घिचा गया है।

इस तस्वीर मे एक रूम है रूम के सा मे एक टी_वी लगा हुआ है।

पीछे कंप्यूटर रखा गया है प्रिंटर मशीन है तीन तीन कंप्यूटर है।

एक बोर्ड है वाइट कलर का दिवाल है दीवाल में घड़ी है।

थम्स अप खा हुआ है एक आदमी अंदर जा रहा है गेट से।

इस तस्वीर में दो दुकान है एक दुकान खाद वाला है बहुत सारा खाद का बोरा रखा हुआ है।

सामने बहुत बड़ा मकान भी है एक सूखा पेड़ भी है।

और वो ऊपर में पोस्टर भी लगा हुआ है शिशा का खिड़की भी लगा हुआ --

इस तस्वीर में एक गेट है गेट में लिखा गया है व्हाइट कलर से ब्लैक कलर का पोस्टर है।

एक दो लोग भी दिख रहे हैं तस्वीर में एक आदमी बैठा हुआ है ऊपर में गमछी बंधला है।

और नीचे बहुत सारा पेड़ पौधे भी है बहुत सारा लाइट लगाया गया है खंभा वाला।

इस तस्वीर में एक किराना दुकान है।

इस तस्वीर में चार पांच बस है बहुत सारे आदमी आदमीन हैं।

इस तस्वीर में गिटार दो तीन लग रहे हैं एक ढोलक है एक बैंजो है।

ऊपर मे व्हाइट कलर का लाइट जल रहा है और बहुत सारा रिबन भी लगाया गया है।

इस तस्वीर में दो तीन आदमी लौक रहे हैं।

लोहा का टेंट लगा है उधर पर्दा भी लगा हुआ है बहुत सा पेड़ पौधा भी लगाया गया है।

बाहर में रेड कलर का कुर्सी भी लगा हुआ है।

इस तस्वीर में व्हाइट कलर का मकान है।

इधर साइड में बड़का सा गेट है।

बहोत सारे आदमी लोग स्कूल के बाहर बैठे हुए हैं।

एक नेट है जो कि खेलने वाला है।

इस तस्वीर में सामने एक कुर्सी है।

रेड कलर में कुछ लिखा गया है ऊपर में बोल जल रहा है।